इस चित्र में एक फूलों का--

सुंदर कमरा दिख रहा।

इस चित्र में एक बड़ा तालाब--

एक बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

लगे हुए हैं।

एक पार्क दिख--

हरे-भरे पेड़ लगे हैं दो कारें दिख रही --

इस चित्र मेंएक ऑफिस दिखरहा है।

इस चित्र में डी_जे दिखरहेहैं।

सुंदर लग रहे हैं।

अपार्टमेंट दिख रहा है बहुत--